हमें पता नहीं है क्या है? लेकिन इसमें बहुत सारे अमोनियम लगे हुए हैं।

पीछे दरवाजा है और एक ड्राइवर के लिए दरवाजा है तीन दरवाजा है जाने के लिए--

फूल वूल लगा है सजावट है एक आदमी बैठा है जो व्हाइट शर्ट पहना है।

ऊपर ग्रीन कलर का पेड़ पौधा भी लौक रहा है।

अलमुनिया का पलंग बन रहा है अलमुनिया का सोल्डिंग करने वाला मशीन है।

नव कुर्सियां है एक ए_सी है और दरवाजा खिड़की है।

एक डॉक्टर है और बहुत सारे मरीज है जो दवा ले रहे हैं।